और इसके अंदर पानी पानी नजर आ रहा है और फेस नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में दो तीन लोग गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यह पिक्चर में एक बड़ा हॉल है।

जिसके अंदर कई सारे मशीन रखें हुए हैं।

और यहां पर टेबल रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक टेबुल जैसे शेड बना हुआ नजर आ रहा है।

और एक ब्लैक ड्रेस बेडशीट डाली हुई नजर आ रही--

और एक काला सर का कुछ चीज टंगी हुई नजर आ रही है।

और एक बोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक लंबा सा गेट गेट तर की तरह दिख रहा है।

और इस पिक्चर के अंदर काफी सारे बैग्स रखें हुए नजर आ रहे हैं।

ए_सी का फैन दिख रहा है टीन शेड दिख रहे हैं लोग दिख रहे हैं।

यहां पर एक बड़ी शॉप नजर आ रही है जिसके अंदर बहोत सारा सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।